रोड पे एक लड़का चल रहा है।

एक बाइक में बैग टांगकर एक लड़का जा रहा है।

आगे में एक कचड़े वाला गाड़ी भी है।

बगल में एक बोरे रखे हुए हैं।

दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पार्क में बैठने के लिए मैदान बनाया हुआ है।

बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बाइक है जिस परे तीन लोग बैठे हुए हैं।

बोर्ड में कैजुअलटी लिखा है।

बहुत सारे वैरायटी के लड़कों के कपड़े रखे हुए हैं।

ये एक महिला कॉलेज है।

पेट्रोल पंप के बाहर रोड दिखाई दे रहा है।

रोड के बीच डिवाइडर दिया हुआ है।

हेयर स्ट्रेट करवा रहा है।

पीछे दरवाजा दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ है इंडियन ऑइल।

बाहर में कुछ स्कूटी बाइक वाले लोग हैं।

एक औरत है जो पैदल चल रही है।

एक अग्रवाल ऑप्टिकल्स है।

दुकान में जाने के लिए रास्ते दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे रंग बिरंगे लाइट जल रही है।

एक टेलीफोन रखा हुआ है।

चार एलईडी टीवी भी है।

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

ढेर सारी बोरिया में कुछ सामान उठाकर रखे हैं।

रोड के किनारे बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है।

दो बोर्ड लगाए हुए हैं।

ये एक मस्जिद लग रहा है।

एक घड़ी दिखाई दे रही है।

नीचे हरे कलर के मैट बिछाए हुए हैं।

दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पे पिक्चर लगाया गया है।

बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

ये एक पूजा स्थान लग रहा है।

एक आदमी है जो पैदल अंदर की तरफ जा रहा है।

ऑफिस में बहुत सारे गिफ्ट सजाए हुए हैं।

सभी दौड़ने वाले पैरों में जूते और मोजे पहने हैं।

ये एक लाल कलर का बुलडिङ है।

जिसके अंदर एक छोटा सा--

बिल्डिंग ऐसा लग रहा है जैसे कोई--

कुछ गार्डेन एरिया है जिस पे छोटे- छोटे पौधे लगाए हुए हैं।

पार्क में चलने के लिए रोड बना हुआ है।

कुछ लोग बैठकर पिकनिक बना रहे हैं।

छोटे-छोटे फूलों के पौधे लगाए हुए हैं।

मार्केट पूरा लरी से सजाया हुआ है।

ऐसे लग रहा है जैसे ये एक दीपावली मनाया जा रहा है।

काफी संख्या में लोग यहां आए हुए हैं।

यह वाइट और लाल कलर का बिल्डिंग है।

एक केक गुलाबी कलर का है और एक पीला कलर का है।

हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है।

सभी पे माला चढ़ाए हुए हैं।

पलंग पे वाइट कलर का बेडशीट बिछाया गया है।

खिड़की है खिड़की में पर्दे लगाए गए हैं।

इवेंट में एक आदमी माइक लेकर बोल रहा है।

एक लैपटॉप रखा हुआ है।

गंगा जी पे पुल बना हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में ढेर सारे टेबल लगे हुए हैं।

ऑफिस में लाइट लगे हुए हैं।

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसे ताला से लॉक किया गया है।

ये एक जू है जू में--

हिरन चारा खा रहे हैं।

मैदान के बगल में कुछ सूखे-सूखे घास हैं।

पीछे घर दिखाई दे रहा है।

मॉल में बहुत सारे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

ये एक तालाब है तालाब के किनारे मछली है।

साइड-साइड चलने के लिए जगह दिखाई दे रहा है।

रंग बिरंगे लाइटें जल रही हैं।

साइड-साइड में बहुत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

ये एक खुला हुआ मैदान है।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

छोटे-छोटे घास भी है।

एक साइड कचड़ा फेंका हुआ है।

ये एक पार्क है पार्क के किनारे चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ है।

गार्डन में घांस जमा हुआ है।

बैठने के लिए कुर्सियां बनाई हुई है।

पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिस पे नारियल के पेड़ बने हुए है और लाइट जल रही है टेबल पे गुलदस्ते रखे हुए है टिशू पेपर है।